और नीचे तरफ वाइट कलर का टाइल्स भी है।

यह दृश्य एक मस्जिद का है।

लोहा का गिरिल भी है।

यह दृश्य में एक दुकान को दिखाया गया है।

नीचे तरफ रेत दिखाई दे रहा है।

और इसका रेड भी है।

ऊपर तरफ पंख लगा हुआ है।

यह दृश्य में एक सोफा को दिखाया गया है।

फर्श का कलर व्हाइट रेड है।

दो आदमी खेल रहे हैं कुर्सी भी है।

यहां पर बहुत सारे टॉय हैं।

यहां पे लाइट भी लगा--

नीचे तरफ़ लकड़ी का डेस्क बोर्ड नजर आ रहा हैं।

यहां पे डेकोरेशन के लिए फूल सब भी लगा हुआ है नीचे तरफ टाइल्स लगा हुआ है।

यहां पे बहोत बड़े बड़े चट्टान भी है।

और यहां पे एक आदमी भी है।

डस्टबिन भी है आर चारों ओर लोहा का घेरा हुआ भी है।

यह दृश्य में एक दुकान को दिखाया गया है।

यहां दृश्य एक ऑफिस का दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य में एक पार्क को दिखाया गया है।

गुब्बारा भी है कलर है व्हाइट रेड पीला नीला।

यहां पे लोहा गद्दा के माध्यम से बनाया हुआ कुर्सी भी है।